इस फोटो में ज्वेलरी शॉप नजर आ रही--

इस फोटो में लोग नजर आ र--

इस फोटो में पहाड़ नजर आ रहा--

इस फो टो में ऑटो नजर आ रही है।